और सामने कुछ पेड़ दिख रही है ऊपर नीला सफेद आसमान दिख रहा है।

नीचे हरी घास लगी हुई है। दूर बहोत से पेड़ दिख रही है। ऊपर रंगीन आसमान दिख रहा--

एक ही कांच वाली टेबल बनी है जिसके अंदर कुछ मिठाइयां रखी हुई--

पानी भरा हुआ है और ऊपर नीला आसमान दिख रहा है साइड में एक ट्रक दिख रहा है।

यहां बहोत सारे रैक बने हुए हैं जिनमें कंप्यूटर दिख रहे हैं और सामने कुछ आदमी दिख रहे है ऊपर छत में सफेद लाइट और सफेद बहोत सारे पंखे लगे हुए --

सामने एक हॉल दिख रहा है जिसमें एक साइड में बोहोत सारी कली बेंच लगी हुई है और कुछ ग्रे कलर की कुर्सियां रखी हुई है दूर एक गेट --